ऊपर कुछ हरे रंग का लिखा हुआ दिख रहा है जिस पे मस्जिद फातिमा लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह चित्र किसी साइकल के दोकान का नजर आ रहा है।

यह दृश्य किसी गैरेज का नजर आ रहा है जहां सामने की ओर कई सारी दो पहियों वाली वाहने खड़ी है।

तथा यहां कुछ ईंटें लगी हुई दिख रही है।

पीछे की तरफ कुछ खिड़कियां लगी हुई है जिन पर परदे लगे हुए हैं।

यह दृश्य किसी मैदान का दिख रहा है।

यहां पर कुछ कुराने भी नजर आ रही है।

यह दृश्य किसी पुलिस स्टेशन का है जहां सामने की ओर कई सारी दो वाहने खड़ी दिख रही है।

तथा ऊपर की तरफ एक बहोत बड़ा झरना नजर आ रहा है यहां पानी तेजी से आता हुआ दिख रहा है।

यहां एक टेबल भी लगी हुई है।

जहां सामने की ओर एक व्यक्ति खड़ा दिख रहा है।

तथा यहां कई सारी हरी भरी पेड़े नजर आ रही है।

यहां सामने की तरफ कई सारी काले रंग की कुर्सियां लगी हुई है।

यहां सामने की तरफ एक स्कैनर की तस्वीर बनी हुई है।